यह फोटो किसी जंगल की दिख रही है जहां पर--

यहां पर एक कंस्ट्रक्शन की साईट दिखाई दे रही है जहां पर --